आस पास कुछ गमले भी रखे हुए हैं।

यह फोटो विजय पुस्तक भंडार से ली गई है विजय पुस्तक भंडार पर एक ग्राहक खड़ा हुआ है।

इस फार्म हाउस के अंदर चार कुर्सियां सीमेंटेड से बना रखी है और कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां भी रख के सजावट के लिए कर रखी है।

फार्म हाउस के अंदर कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

यह तस्वीर गौशाला से ले रखी है और इस तस्वीर में दो गाय नजर आ रही हैं।

इस एकेडमी में कुछ बच्चे अभ्यास कर रहे हैं।

छोटे छोटे चित्रों से दर्शाया गया है कि यह एक मार्टल आर्ट्स अकेडमी है।

कानों में एयरफोन भी लगा रखी है जो कि सरसों के खेती का फोटो ले रहा है।

यह फोटो किसी हल्दी रसम से ली गई है।

इस रसम में बैक साइड में जो डेकोरेशन की जाती है उस बोर्ड की यह फोटो है।

टेबल से दूसरी साइड एक बोर्ड भी है ब्लैक और व्हाइट ऑफिस देखने पर बहुत ही अच्छा लग रहा है।

यह तस्वीर एक झील की है झील दो पहाड़ियों के बीच से होती हुई आ रही है।

झील के नीचे की साइड तीन टूरिस्ट खड़े हुए हैं जो कि फुल इंजॉय करें रहे हैं।

और बैग के बराबर में डस्टबिन भी है।

यह एक झील है यह पहाड़ों से बहती हुई आ रही है।

यह फोटो एक जिम से ली गई है जिम के अंदर दो वॉल्क रनिंग मशीन रखी हुई है।

यह फोटो एक नदी की है नदी का बहाव फोटो लेने की दूसरी साइड बह रहा है।

और बाहर खेड़ा भूमिया का एक मंदिर है।

और जिम में कुछ पैकिंग सामान भी है जिम के अंदर दो आदमी भी है।

और एक व्यक्ति आपस मे बात कर रहे हैं।